मोबाइल चेक कर रहे हैं और कुछ लोग अपना फाइल का काम कंप्लीट कर रहे हैं।

इस तस्वीर में एक होटल दिखाया गया है होटल का कॉरिडोर है यहां--

ये एक गेस्ट रूम है यहां एक सोफा सेट रखा है जिसका कलर ग्रीन है।